देखिये ये पेस्टी है और ये पेस्टी बद्दे एनिवर्सरी या किसी पार्टी उम्म वगैरा में काम आती है और ये ब्रेड और क्रीम द्वारा तैयार की जाती है और ये खाने में बहोत टेस्टी भी होती है।

इन्स इन्सइन बैंक है और जो बैंके होती है वो हमारे टैक्स पैसे जमा होते है तो हमें कुछ पैसे के माध्यम से हमें ब्याज भी मिलता है यहाँ से और यहाँ हमारे पैसे सक्सेसफुल रहते हैं। हमारे पैसे यहाँ पे मतलब कही जाते नहीं है इसलिए।